यहां पर एक लाल रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है बाहर कुछ बसें खड़ी हुई है।

इस चित्र में हमें यहां पर कोई रूम दिखाया गया है जहाँ पर नीचे फर्श बिछाया गया है।

इसने टोपी पहनी हुई है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मस्जिद है।

इस चित्र में हमें कुछ गद्दे दिखाए गए हैं जो कि रंग बिरंगे--

इनसे धागा बांधा गया है। कुछ ईटें रखी हुई है। पीछे एक बिल्डिंग बनाई गई है।

एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है जो की सफेद रंग कहां है और कुछ एल_सी_डी भी लगाई हुई है।

इस चित्र में हमें एक हेयर सैलून की दुकान दिखाई गई है जहां पर बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।